इस ग्राउंड के अंदर बहुत सारे आदमी दौड़ लगा रहे हैं।

पिछली साइड कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

इन पहाड़ों के बीच कुछ पत्थर भी पड़े हुए हैं।

यह एक रोड है इस रोड के बीच में एक मंदिर बना हुआ है।

और कुछ डीजे भी लगी है और उस डीजे पर कुछ लड़कियां डांस भी कर रही है।

और कुछ आदमी डी_जे के पीछे भी खड़े हुए हैं।

जिस बोर्ड पर एक कार का चित्तर भी बना हुआ है और कुछ सलेंसर के चित्र भी बने हुए हैं।

यह एक मकान है। इस मकान के ऊपर पीले कलर का पेंट भीं हुआ है।

और टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई है और कुछ बोतल भी रखी हुई है और एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

और कुछ लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

इसके पास तीन आदमी भी खड़े हुए हैं इसके पिछली तरफ कुछ पेड़ भी खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत अच्छा स्कूल है इस स्कूल के अंदर एक कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं औ--

और इसके अंदर कुछ आदमी चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

यह एक रोड है रोड के ऊपर एक रिक्शा खड़ी हुई है रिक्शा में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और एक आदमी बुलेट सही कर रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और इसके पिछली तरफ कुछ लोहे की गिरिला भी ल--

और एक कुडर्सी भी पड़ी हुई है कुडशी के ऊपर एक लेडिस बैठी हुई है।

यह एक घर है इस घर के अंदर एक गेट लगा हुआ है बहुत बड़ा--

यह एक रोड है इस रोड के ऊपर कुछ ऑटो खड़ी हुई है।

और एक ओटो के अंदर एक आदमी और कुछ औरत बैठी हुई है।

ये खेलने का कैरम बोर्ड है जिसके पास तीन आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक स्कूल है इस स्कूल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जैसे की पेन और डब्बे भी रखे हुए हैं और बराबर में--

जिसके ऊपर लिखा है सेवा में और कटोरियों के चित्र भी बने हुए हैं।

टेबल के पास कुछ कुर्सियां भी बिछी हुई हैं जिनके ऊपर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।